वही बच्चों के पीछे एक साइकल और एक टोटो नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक जनरल स्टोर का है जहां काफी सारे राशन के चीजे और डेली यूज का सामान रखा हुआ है।

दुकान के ऊपर सीलिंग पे दो पंखे और तीन सी_सी_टी_वी लगी हुई है।

जिसके सामने एक काले रंग की बाइक और एक साइकल खड़ी है।

जिनमें से एक फाइल के बंडल के ऊपर एक सीजर रखा हुआ है।

नीचे एक ट्रांसपेरेंट शेल्फ है।

दुकान के बाहर तीन व्यक्ति नज़र आ रहे हैं।

जिसके अंदर एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है।

यह दृश्य एक दुकान का है।

पीछे काफी सारे कुत्ते के पट्टे भी लटकाए हुए हैं पीछे दीवार का रंग सफेद है जिसके बगल में एक ट्रांसपेरेंट डोर लगा हुआ है।

जिसमें पहले दुकान में एक ट्रांसपेरेंट शीशे का डोर लगा हुआ है वहीं दूसरे दुकान में एक।

तालाब की सीढ़ि पर काफी सारे लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे--

जहां पे पांच सफेद रंग के तोते है।

यह दृश्य एक दुकान का है।

जिसके ऊपर काफी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं।

होटल के अंदर दो एयर कंडीशनर और एक सी_सी_टी_वी नजर आ रही है।

जोकि सफेद पीले और ब्लू कलर में है।